इस तस्वीर में बहुत सारे डंबल नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में पिलर खड़ते करते हुए तीन आदमी नजर--